खड़ा हुआ है इसके सामने दो बाइक खड़ी हुई है एक बाइक का शीशा दिख रहा है यहाँ पर --

यहाँ पर कुछ बाइके नजर आ रही है सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने नीचे जीन्स पहनी है और ऊपर जैकेट पहनी है जो हरे रंग की है।

पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है और दूसरी साइड भी एक आदमी बैठा हुआ --

लंबा सा नजर आ रहा है सामने एक टेंट बना हुआ दिख रहा है।

हरे रंग की दिखाई दे रही है अंदर कुछ फूल दिख रहे है।

यहाँ पर एक काले रंग का कार जो उनका --

इन दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है काफी सारी बाइकें दिखाई दे रहे हैं एक --

ऑरेंज कलर का ह --

एक गार्डन की जमीन नजर आ रही है जो खाली पड़ी हुई है कुछ छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे है सामने |